बढ़िया बढ़िया कुल टाँगल बाटे सुन्दर लागतटे बोरिया में कुछ रखल बाटे ओकरे बाद राखल बा नीक लागत --

बहुत बढ़िया घर बा घर बहुत सुन्दर लगताते नील.. आशमा.. कुछ धा.. धानी रंग के बाटे इमे तीन को जंगला बाटेईगो बड़ा जंगला इधर बाटे।